ये फोटो एक रेस्टोरेंट की है।

ये फोटो एक मॉल की है।

ये फोटो एक रोड की है।

इसकी हरे रंग की पत्तीया हैं।

ये फोटो एक बड़े से रेस्टोरेंट की है।

ये फोटो एक डोसे की लग रही है।

ये फोटो एक रेस्टोरेंट की है।

यहां सफेद रंग के गमले भी रखे हुए हैं।

गाड़ी सफेद रंग की है यहां पेड़ भी हैं।

है और वो हरे रंग की कुर्सी पर बैठा--

ये फोटो किसी हॉस्पिटल या बैंक की है।

फूलों की मालाओं से इसे सजा--

कोई मकान बनाया जा रहा है।

और यहां पर कई सारे--